यह पुराने ज़माने का जेल लग रहा है जिसकी दीवारें बहुत ही मोटी-मोटी है ऊपर में छत है लाल कलर का यह बहुत ही स्ट्रोंग बिल्डिंग नज़र आ रहा है इसमें सीढ़ी भी लगी हुई है।

डिस्टेंस की दुरी इस से नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो फील नहीं कराता है।

किसी मीटिंग हॉल का दृश्य है मॉल ई सब में टी.वी. भी लगा हुआ है दुकान ई सब है कुर्सी जो लगी हुई है और लोहे की दुकान है ।